की हम देख पा रहे है यह एक स्टडी रूम है यहाँ पर बच्चे अपने अपने स्टडी कर रहे है और यह यहाँ पे गेट लगा हुआ है।

और नीचे ब्लू कलर की पट्टियाँ टाइल्स लगाई गई है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा हैं।

और यहाँ पे एक पेन वगैरा बुक्स बैग वगैरा यहाँ सारी चीज़े सभी चीज़े उपलब्ध है जैसे की मैं देख पा रहा हूँ।

इसमें जो हैं यह एक पार्क है और यहाँ पे एक कंगारू नजर आ रहा है आजू - बाजू हरे - भरे पेड़ नजर आ रहे है।

जैसे की हम देख पा रहे है ये एक पहाड़ी एरिया है। और यहाँ पे--

ये नदी का हाट घाट है।